माला को बेचते हुए दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक खूबसूरत सा बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है और रात का ये समय है।

इस इमेज मे दिखायेगा सामने एक रोड दिखाई दे रही है जिसपर एक बाइक चलती हुई दिख रही है।

अ शॉप दिखाई दे रही है जहां पर पैकेट्स में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

इस इमेज में दिखेगा एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर शोकेस में --

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।

इस इमेज में देखिएगा एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जहां पर देवलोक द सिल्क पीपल --

यहां पर देखिएगा इस इमेज में एक रोड दिखाई दे रही है और यहां पर साइड में बड़ी सी बिल्डिंग भी --

सिमेज में देखियेगा यहां पर एक सुंदर सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भारत माता का झंडा लहरा रहा है।

इस इमेज मे देखिएगा एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसपे कई सारी झाड़ियां आ रही है।

दिखाई दे रहा है जहां पर रंग बिरंगी कुर्सियां लगी हुई है जो बहुत ही सुंदर दिख रही है।

कुर्सी पर बैठकर अपना खाना खाते हुए देख रहे हैं यहां ऊपर की तरफ--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर रोड पर एक बस खड़ी हुई दिख रही है और यहां पर साइकिल भी खड़ी है। दो तीन लोग--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और काफी सारे दुकानें हैं।

इस इमेज में देखिएगा एक सुंदर सा होटल दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारी --

शॉप दिखाई दे रही है जिस पर एक्सपोर्ट शूज लिखा हुआ है इसका शटर बंद है बाहर की ओर देखिएगा एक --

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है और यहां पर एक सलून है।